यह एक ढाबा का दृश्य है। जिसमे लिखा हुआ है आई_बी_पी ढाबा ।

इसके गेट के बाहर में बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई है।

अंदर में बहुत सारे सामान रखे गए हैं फर्नीचर से रिलेटेड ।

एक आदमी दिखाई पड़ रहा है जो लाल जूता पहना हुआ है ब्लैक कलर का जींस और ब्लू कलर का शर्ट पहने हुए वृक्षों की ओर देख रहा है।

इसके नीचे बहुत सारे सामाने रखी गई है।

यहां पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहां पर परसादी खिलाया जा रहा है।

यह एक रेस्टोरेंट का दृश्य है।

यह एक कपड़े के मॉल का दृस्य है।

एक आदमी के गले में लाल गमछा बांधा हुआ है जो कि मोबाइल देख रहा है।

ठीक बगल में और एक बड़ा घर है जिसमें ब्लैक कलर का टंकी नजर आ रहा है ।

बहुत सारे कोल्ड ड्रिंके रखी हुई है।

और बहुत सारे बैलून से इसे सजाया गया है।

यह एक स्थान का दृश्य है उसके चारों ओर हरे भरे पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं।

के अंदर में दो आदमी दिखाई पड़ रहे हैं एक ने येलो कलर का शर्ट पहन रखा है।

यह एक दुकान का दृश्य है यहां पर बहुत सारे सामान रखे गए हैं उसमें से कुछ बॉल भी है।

एक लाल कलर का कड़ाही जो कि तराजू में लदाया गया है।

कुछ पेंसिल भी रखा गया है बहुत सारे रबर रखे गए हैं।

स्कूल के बाहर मे बहुत सारे गेटे हैं कुछ गेटे मे जाली भी दिया गया है।

यह एक अंडरग्राउंड गुफा का दृश्य है जिसके अंदर बहुत सारे खोखले बने हुए हैं।

के बाहर में एक सीसे का गेट लगाया गया है।

इसके बगल में दो बैलून कलर से सजाए हुए हैं कार्टून भी रखे गए हैं ।

बगल में एक जाली लगाया गया है यहां पर एक नाली भी है।

एक लड़की ने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है दूसरी लड़की जो है गमछी लेकर माथे पर रखी हुई है।

पीछे साइड में लाल कलर से रंगा हुआ है।

इसमे तीन लाइटे जलती हुई दिखाई पड़ रही है।

इसमे दो चार चक्के लगाए गए हैं।

कुछ बच्चे हैं कुछ बड़े हैं एक बड़े जो आदमी बैठे हुए हैं एक बच्चे को गोदी में लेके।

ठीक बगल में हरे भरे पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं।

यहां पर एक आदमी खड़ा है जिसके बगल में एक छोटा सा पत्थर है।

यह एक ब्लू कलर का जींस पहना हुआ है और ब्लू कलर का जैकेट भी साथ में जूता भी पहना हुआ है।

इसके बगल में एक दरवाजा है।

कुछ फुले लाल कलर की दिखाई पड़ रही है जो कि गेंदा फूल हैं।